इस पिक्चर में काफी सारी लड़कियां--

जहां पर काफी तरह के फल बिक रहे हैं।

यह पिक्चर एक यूनिवर्सिटी का है।

इसमें एक टीचर भी नजर आ रहे हैं।

जिसके दीवार का कलर वाइट है।

जिसमें एक लड़की डांस कर रही है।

यह पिक्चर एक कार रिपेयरिंग सेंटर की है।

इसमें कुछ पेर भी दिख रहे हैं।

इसमें कुछ व्यक्ति भी दिख रहे हैं।

नीचे की साइड घास उगी हुई है।

और कुछ तास की पत्तियां भी है।

इसमें कुछ विंडोस भी हैं।

ये पिक्चर एक स्कूल की है।

यह स्कूल की बिल्डिंग काफी बड़ी है।

इसकी दीवार स्काई ब्लू कलर की है।

नीचे वाइट कलर की टाइस दिख रही है।

इसमें काफी बड़े-बड़े टायर्स दिख रहे हैं।

नीचे की साइड टाइज भी है।

और इसकी दीवार ग्रीन कलर की है।

इसमें काफी सारे पिलर्स दिए गए हैं।

नमाज पढ़ के निकल रहे हैं।

और कुछ अंदर नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं।

और इसमें काफी सारे चप्पल जूते दिख रहे हैं।

इसमें काफी सारे व्यक्ति दिख रहे हैं।

और काफी बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी है।

और इसमें कुछ सोलर पैनल लाइट्स भी लगी हुई है।

इसके बाहर कुछ लोग व्यक्ति दिख रहे हैं।

और इसमें कुछ वाहन भी नजर आ रहे हैं।

ये पिक्चर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल शॉप की है।

जिसका नाम वाई सी इलेक्ट्रिक वेहिकल है।

इसमें दो इलेक्ट्रिक टेंपोस दिख रही है।

ये पिक्चर एक एजेंसी की है।

इसमें कुछ व्यक्ति भी दिख रहे हैं।

इसमें काफी ग्लासेस भी लगी हुई है।

और इसमें काफी ज्यादा भीड़ भी है।

ऊपर मौसम काफी सुहाना है।

और इसकी दीवार भी वाइट कलर की है।

और इसमें एक व्यक्ति भी दिख रहा है।

ये पिक्चर एक फार्म हाउस की है।

और इसके चारों तरफ काफी सारे पेड़-पौधे हैं।

जो अभी इनकंप्लीट है।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

इसमें काफी सारी दुकानें खुली हुई है।

इसमें कुछ वायर्स भी नजर आ रहे हैं।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

इसकी दीवार क्रीम कलर की है।

ये पिक्चर एक योगा क्लास की है।

यह पार्क काफी बड़ा है।

लकड़ियों की दुकान का है--

जिसमें काफी सारी लकड़ियां छटा के रखी गई है।

यह पिक्चर एक बुक स्टोर की है।

और इसमें कुछ व्यक्ति भी दिख रहे हैं।

जिसका नाम ब्लू सिंग टोन है।

और इसकी दीवार पिंक और वाइट कलर की है।

यह पिक्चर एक ऑफिस की है।

और इसकी दीवार वाइट कलर की है।

इसमें कुछ पंखे भी दिख रहे हैं।

जो फिजिक्स वाले की पोस्टर है।

ये पिक्चर एक क्लासरूम की है।

ऊपर कुछ लाइट्स और पंखे भी हैं।

और नीचे टाइस भी दिख रही है।

इस पिक्चर में कुछ बिल्डिंग दिख रही है।

इसमें से एक घर का कलर स्काई ब्लू है।

यह पिक्चर एक इनकंप्लीट हाउस की है।

और इसकी दीवार वाइट कलर की है।

इसके पीछे एक काफी आलीशान घर भी दिख रहा है।